एक शदरे का सेठ छरा हुआ है इसके अंदर।

दो बस खड़े हैं खड़ा है और सामने में रोड है। रोड पे बहुत से--

यह एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क का फोटो है। इसमें बहुत से झूले लगे हुए हैं।

बहुत अच्छा है उसमें स्टील का अ चैन लगा हुआ है।

ट्रे के नीचे में एक कढ़ाई हैकढ़ाई बहुत काला है।

बहुत से झरने लगे हुए हैं और झरना चल रहा है।

यह एक कोई रेस्टोरेंट का फोटो है रेस्टोरेंट दिखने में बहुत अच्छा है।

गेट खोल के एक आदमी गमछी पहन के अंदर जा रहा है।

अर बाउंड्री में पूरा जालीदार वाला लोहा लगा हुआ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा--

यह एक कोई होटल का फोटो है होटल बहुत सफाई सुथरा है।

इसमें किलर नाइक एच_एम और स्पाईकर लिखा हुआ है ।

और सैलून के बाहर में एक बहुत बड़ा ए_सी भी लगा हुआ है।

और लड़की के सामने में एक हाथ सफाई का क्लीनर रखा हुआ है।

नीचे में एक शटर लगा हुआ दरवाजा ह--

यह एक बहुत बड़ा मकान दिख रहा है।

उसके पास दो गो लाल कुर्सी रखा हुआ है टाइल्स लगा हुआ है पूरा लाइट जला हुआ है।

पेट्रोल पंप में एक टैंकर भी लगा हुआ है।